यहां पे कोई सीरियल या पिक्चर की शूटिंग हो रही है ऐसा दिख रहा--

और मॉल में बीच के अंदर एक कच्चा सा--

दिख रहे हैं और साइड में एक बंदा खड़ा हुआ हैं।